एक आदमी यहा पे पूजा करते हुए नजर आ रहा है और काफी सारे यहा पे भीड़ भाड़ है और बहुत ही बुक सेण्टर मे भीड भाड़ लग रहा--

नमाज पढ़ने आए है कुछ लोग और कुछ लोग यहाँ पे अ पढ़ने के लिए आए है बच्चे और ये उर्दू सीखते है यहाँ पे आके मौलवी सीखाते है। इन्हे--

और काफी सुंदर से यह मस्जिद बना हुआ है। रेड कलर का कार्पेट बीछा हुआ है। कुछ लोग उस पे बेठे है नमाज पढ़ने के लिए बेठे हुए है। कुछ लोग बाते कर रहै है।

और काफी सुंदर सा ये नजारा लग रहा है। देखने मे बहुत ही अच्छा स ये व्यू आया हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहा--

और बोहोत ही प्यारा सा ये देखने मे लग रहा है ये मूर्ति काफी लोग यहाँ इकट्टे है काफी लोग यहाँ पे आए हुए है भीड़ भाड़ भी बोहोत है।

ये घर बना हुआ है। बहुत ही बड़ा स बना हुआ है और बहुत ही और एक भी बना हुआ है। बहुत ही सुंदर सा ये बिल्डिंग नजर आ रही है।